यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहे हे।

सरसों तेल भी दिखाई दे रहै हैं बिस्किट भी--

और बादल कितना घाना दिखाई दे रहा है इंद्र धनुष भी दिखाई दे रहा है।

और घर के नीचे तरफ को खोद रहा हैं।

एक स्कार्पिओ भी दिखाई दे रहा है।